जिसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही--